डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशल वेलफेयर आंगनबाड़ी सेंटर सीमतीला दीमापुर।

और हम वायर्स को देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स को देख सकते हैं।

इनको देख के लगता है कि ये किसी दुकान की है।